यह एक मंदिर है यहाँ पर साई बाबा की मूर्ति रखी हुई है माँ शेरावाली की मूर्ति रखी हुई है।

इस किचन में खिड़कियाँ हैं और खिड़कियों में परदे लगे हुए हैं और यहाँ पर --

सब्जी खरीदता हुआ आदमी खड़ा होकर मोबाइल भी चला रहा है।

और यहाँ पर लकड़ी का एक बैंच है यहाँ पर --

इस चित्र में हमें मिठाई की दुकान दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें एक इस्कूल दिखाई दे रहा है इस्कूल के पीछे पथरीले पहाड़ है।

जहाँ पर लगा हुआ है उसके नीचे में मिट्टी म-म बिछी हुई है।

का है एक टावर लगा हुआ है बहोत ही लम्बा यहाँ पर एक कार खाड़ी हुई है बाहार।

इस चित्र में हम देख सकते है कि लग रहा है यह एक पेट्रोल पंप है।

इस चित्र को देख कर लग रहा है कि यह एक बस स्टैंड है और यहाँ पर बहोत ही सारे लोग खड़े हुऐ हैं। यहाँ पर --

इस चित्र में इनकम टेक्स्ट डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर बहोत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है।